एक फूलों का बगीचा है।

बहुत सारे लोग आते हैं बाल कटवाने दाड़ी बनवाने और यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से बाल काटे जाते है यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से लोगो की दाड़ी बनाई जाती है और यहाँ पे --

और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं घुमने के लिए और ये झरना बहुत ही गहरा है।

यहाँ पे लोग आते हैं बस में सफ़र करने के लिए और यहाँ पे बहुत सारे कंडक्टर होते है जो की लोगो को बस में चढ़ाते है और यहाँ पे --